प्लीज देखे यहां पानी कैसे आ रहा है नीचे की ओर।

ये ग्रीनरी ये लोग कैसे पथरों पे खड़े है यहाँ पर ट्रीस कितने खूबसूरत है।

हां बहोत अच्छी खूबसूरती है आप देख सकते हैं।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

अ झंडा एक लगा हुआ है तिरंगा यहां पर--

यह बहोत ही अच्छी पिक है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें--

भी नजर आ रही है जहां पर हमें कलर भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक फेस्टिवल है जो टेंट लगा हुआ है।

बहोत ही अच्छा व्यू है इसमें हैंग फैंस है।

लाइट्स देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं ये लाइट्स भी आप--

ये एक स्टेच्यू है इसमें आप आईस देखेंगे ब्लैक कलर का।

आप देख सकते हैं यहां पर ये हेयर उनको पेन लगाके हेयर्स को--

हमें एक आ आदमी मिल रहा है जिसके लेग्स पे--